टीपी वर्मा कॉलेज नाम दर्शाया गया है जिसमें अंदर जाने यहां एक भी लोग नहीं देख गए हैं आगे सामने बाइक्स पे एक दो लोग समान दिख रहे हैं।

यहाँ सामने एक टेकर ट्रक और एक बाइक एक आदमी भी दिख रहा है नीचे में बहुत सारे आदमी भी हैं।

और कुछ महिलाएं भी बैठे हुए हैं और अपने पेशेंट से बातें चीतें कर रही हैं।

यह एक घर दिख रहा है जो काफी सुंदर आकार में है बाहर स्कूटी लगा हुआ है एक आदमी बैठा हुआ है अगर बगर में--